ये एक ऑफिस का सीन है जहां पे बहुत बड़ा टेबल जैसे केबिन सा बना हुआ है।

तो मतलब जो जो कार्स हैं वो बाहर शो के लिए खड़ी की हैं अंदर काफी सारी कार्स जो हैं वो लगी हुई हैं।

और यहां पे लगा हुआ है।

और ब्लेलेंस के साथ डेकोरेशन की हुई है बहोत सुंदर--

बना हुआ एरिया जहां पे योगा के लिए मैट्स बिछाए हुए हैं और सामने बोर्ड भी लगा है योगा लाइफ का--

और उसके साथ काफी पाइप्स वगैरह अटैच किए गए हैं।

जहां पे सामने काफी सारे नें मतलब सैंपल्स के पिक्चर्स दी गई है पोस्टर्स वगैरह पेस्ट किए हैं।

ये एक पार्क का सीन है जहां पे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगे हुए हैं और ट्रीज भी हैं।

अच्छा विउ लग रहा है फ्रेश फ्रेश सा।

ये एक माउंटेन की पिक्चर्स हैं माउंटेंस की।

ये एक जिम का सीन है जिम की पिक्चर है।

अ जहां पे काफी सारी स्वीट्स शीशा मे रखी है।